इसके अंदर जाने का रस्ता है दुकान के अंदर एक दिवाल घड़ी लटकी हुई एक केलेन्डर लटका हुआ है और रैक में कुछ कॉपी किताबे रखी हुई हैं ।

यहाँ पर एक बहु मंजिला इमारत है जिसमें एक बैंक है और एक होटल भी है आ-उसका कलर जो है वो नीला है बिल्डिंग में सफे ब्लू कलर की--

यहाँ पर एक मैदान है जिसमे बहुत सारे पेड़ लगे हुए है कुछ पेड़ ग्रीन कलर के और कुछ ओरेंज कलर के है नजर आ रहे है उपर--

यह एक जंगल है जंगल के बीच में से एक कच्चा रास्ता जा रहा है कच्चे रास्ते के आस पास बहुत सारे हरे भरे--